एक बहुत ही खूबसूरत छे फ्लोर वाली मस्जिद है सबसे ऊपर इसकी ग्रीन कलर की लाइटों से मिनार बना है।

एक पत्थर का कुछ बना हुआ है उसके ऊपर एक हिरन की हिरन की पोस्टर लगी बनाई हुई गई है चित्र बनाया गया हुआ है आस-पास पेड़-पौधे हैं।

दूर एक पहाड़ पहाड़ियों पे हरी-हरी घास लगी हुई है इस मैदान में भी हरी घास लगी है एक साइड पे दीवाल पे कुछ लिखा हुआ है होल्डिंग्स से।

एक शॉप है शायद उसमे रंग-बरंगी गिटारे है येलो ऑरेंज पिंक ग्रे ब्लू ।

इसमे शटर है फिरोजी कलर के इसका एक शटर भी फिरोजी कलर का है अंदर शटर के अंदर कुछ लोग बैठे है।

यह एक शॉप है जहां पर एक कुर्सी रखी है बहुत सारे कपड़े रखे हैं कुछ कपड़े काउंटर पर रखे हैं काउंटर कांच का बना हुआ है।